फोटो में मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कांच के खिड़की दरवाजा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में फुग्गो की सजावटे दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ बैंड बाजे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक पहाड़ी दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में एक कच्ची रोड दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो मे बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो मे बहोत सारी बिजली की तारे दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे एक लाइट दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ सीमेंट की बोरियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे कुछ खंबे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो मे मुझे बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत बड़ा पंडाल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ एंबुलेंस दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा कुंड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कुछ औरतें दिखाई दे रही है।